और ईं तस्वीर पर आप देखणा होला लग्यां एक शेर हाथी जिराफ और घोड़ु बणायुं छ ये बच्चों का मुख्यतर बणायिं ताकि बच्चा यख ज्यादा से ज्यादा औ --

ये जो आप देखण लग्यां ये गणेश मंदिर की तस्वीर छ और यी का एंच आप देखण होण लग्यां कि माइक लग्यां जै पर सुबह शाम आरती होंदी।

यह जू दृश्य आप देखण लग्यां यू टिहरी बाँध कू छ।

यह एक सफ़ेद रंग की ईमारत छ जेका ऐंच एक मिनार खड़ी छ और मिनार का चारों और हरा - भरा पेड़ लग्यां छ।

असल में यू एक मोबाइल की दूकानयू का दृश्य छा जख आप देख सकदा।

एक सुन्दर सी तस्वीर आप देखण गया जैमा एक सुंदर सी पहाड पर काफी पेड़-पौधा लग्यां छा जू दिखणा मा काफी सुन्दर लगदु।

ये जो आप पत्थर दिख्येणा लाग्यां ये असल म ये कह उत्तराखंड म पिट्ठू बोल्दा।

और जब कखि शादी होंदी त इस प्रकार साजोन्दा ताकि लोग यख आकि खाणु खै सका।

ये जो आप ऐडवेनचर भी देखण अग्यां आई लव टिहरी या टिहरी मा बणी।